रोलिंग वाली है और एक नीचे जो है जो फर्स दिख रहा है वो लकड़ी जैसा दिख रहा है ।

सड़क के पास में एक सफेद रंग का चर्च दिख रहा है जिसमें प्लस का चिन्ह दिख रहा है और नीले कलर का गेट दिख रहा है।

मंडप पूरा अच्छा से सजाय हुआ है फूलों से और इसके पास मे एक पुतला भी दिख रहा है और लाइटिंग भी लगी हुई दिख रही है ।